जिसमें बीच में एक मंच ब--

मंच में एक बच्ची पड़ी हुई है जिसने ब्लू कलर का कपड़ा--

और उसमें बहुत सारे फूलों के--

यहाँ पे एक नेशनल डांस एकेडमी का बिल्डिंग है जहां पे एक--

ये एक कोचिंग इंस्टिट्यूट है यहां--

यहां बच्चे चेयर में बैठे हुए हैं जो की सीक्वेंस में--

जिसका पानी नीले कलर का दिखाई दे रहा है ये साफ और क्लियर है।

और इसके साइड में बहोत सारे सो--

और एक हाल है हाल के ऊ पर सिढी लगी हुई है हाल में रेड कलर की--

पार्क में बाउंड्री लगी हुई है और पार्क में अंदर बहोत सारे बच्चे खेल रहे हैं।

और इस आश्रम का नाम स्वामि --

आइसक्रीम कैफे हैं जिसके अंदर कुछ लोग खड़े हुए हैं कुछ बच्चे हैं इसमें तीन दरवाजे हैं।

इसमें कुछ चेयर्स भी रखे हुए हैं।

ये एक फल और सब्जियों का दुकान है जहाँ पे फल भी है सब्जियाँ भी है जैसे कि नव --

और इसके साथ ही साथ अब प्याज और लहसुन भी है और ऊपर में अं केले केले लटके हुए और कुछ फ्रूट्स दिखा--

बहोत सारे भगवान की मूर्तियां हैं।

जिसमें राम भगवान की मूर्ती है नरसिंग भगवान की मूर्ती है विष्णु भगवान की मूर्ती है राम लक्ष्मण जानकी माता की मूर्ती है।

और साइड में बहोत सारे हरे भरे पौधे हैं बगल में एक लड़का गार्डन में जा--

यह एक रूम है इसमें बहुत सारे चेयर रखे हुए हैं कतार बद्ध।

इसमें बहोत सारी ज्वेलरी रखी हुई है ऊपर में कतार से ज्वेलरी रखी हुई है और नीचे में एक कांच में बंद ज्वेलरी रखी हुई है।

जिसमें बहोत सारे कटिंग किए हुए पेड़ पौधे--

और सामने में एक बड़ा सा बोर्ड लगा--